जहां पर एक बहोत ही बड़ी नदी है।

और ऊपर एक गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है।

पास में एक टीचर भी बैठी हुई हैं।

और कुछ बच्चे हैं जो सिविल ड्रेस मे हैं।

जिसका नाम पी_आर हुंडई शोरूम है।

ये इसका कलर दो तीन कलर में दिया गया है।

और एक व्यक्ति वहां सीढ़ियां भी दिख रही हैं।

और शोरूम के अंदर दो कलर के बलूंस से डेकोरेशन हुआ है।

और यहां पर बहोत सारे पेड़ अभी जो छोटे छोटे लगे हुए हैं उसके आसपास बहोत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और बाहर आसपास में धूप का मा धूप लग रही है।

यहां पर तीन कलर की लाइट लगी हुई हैं।

और एक व्यक्ति गाड़ी पर बैठा हुआ फोन चला रहा है।

और कुछ टमाटर इसमें रखे हुए हैं जो कि कच्चे टमाटर हैं।

इसमें कुछ टमाटर ऐसे हैं जो खराब भी हो जाएंगे जल्दी।

यह एक बहोत बड़ा मैदान नजर आ रहा है।

दो कैमरे भी लगे हुए हैं और लाइट भी है।

और एक दुकान कलकत्ता रगुल्ला की नजर आ रही है।

जहां पर बहोत सारी साइकिल्स खड़ी हुई है।

यह एक कपड़े की दुकान है जहां पे लड़कियों के कपड़े मिलते हैं।

और ऊपर लगी लाइट्स है येलो कलर कि।

और यहां पर गुब्बारों से सजावटे भी हुई हैं।

पार्क के बाहर एक एंबुलेंस भी व्हाइट कलर की खड़ी हुई है।

ब्लैक कलर के शर्ट में खड़ा हुआ हनुमान जी के चरन छू रहा है।